नहाते हैं। एक-दूसरे से शैतानी करते हैं देखो।

काफी बड़ा ग्राउंड है। चारों तरफ से इसके पेड़-पौधे हैं।

एक इस का छावा भी खरा हुआ है। देखो काफी बढ़ियां --

घर की यूज करने की।